ये सामने टीवी भी दिख रहा है हमें लगा हुआ ये बिहार का सैलून है जहाँ पर ये कटिंग वाग्रेह शेविंग वाग्रेह होती है ये अंकल इधर पर शेविंग करवाने के लिए आये हैं।

ये देख सकते है ये बिहार के जहानाबाद की ट्रॉ ट्रैफिक की फोटो है ये देखिए कितना ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे।

उधर से ये लोग उसको देख रहें हैं ये इसके पीस कर-कर के इसको काट के बेचेंगे इस मछली को मछली बेचारी जल जीव --

ये देखिए ये भाईसाहब अपनी शॉप में बैठे हुए है ये बु इनकी देख सकते है की इनकी बुक की शॉप है यहाँ पे बुक वैगरह रखी हुई है कॉपी रखी हुई है पेंसिल है इरेज़र है शॉपनर है।

ये क्रिश्चियन लोगो कि जो रैली निकल रही है ये यहाँ पे ये किसी की शादी या किसी कि किसी की डेथ में जा रहे हैं शायद ये देख सकते है आप परेड निकल रही है क्रिश्चियन लोग है।

अपने बेटे को पीछे बंधे हुए है और युद्ध लड़ती हुई हाथ मे तलवार नजर आत --

देखिए इन्होने किसी पूजन वैगरह मे जा रहे होंगे रेली में इन्होंने सारे लोगों ने रेड रेड कलर का पहन रखे रखा है।

इ बिहार के जहानाबाद में हाईवे के फोटो नजर लेती आ रही है इधर पे ये पुल बना हुआ है उधर पे आप देख सकते है वहां से रेल निकलती होगी।

ये बिहार के जहानाबाद का सैलून है ये देख सकते हैं ये भाई साहब ने अपनी कटिंग करवाके हुए और अच्छे से सेट करवाके कैसे सेल्फ़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर देखिए फैन लगे हुए हैं।

ये देखिए ये जो भाई साहब है इनकी तंदूरी चाय की दुकान है ये देखिए तंदू यहाँ पे तंदूरी चाय स्पेशल मिलती है।

बिहार में आजकल खान सर के चक्कर में पूरा सब इ एग्जाम निकालने को पड़े हुए हैं।